दिखाए गया चित्र में हम जो दुकान देख रहे हैं वो एक टायर की दुकान है जिस टायर जो टायर --

मिलता है और यहां पर देख सकते हैं बच्चों और बड़ों की भीड़ लगी है बच्चे झूले झूलने में व्यस्त है।

किसी न किसी फैक्ट्री या किसी में काम करने वाली एक करमकारी कर्मचारी लग रही है।

हर प्रकार की एक्सेसरी हर प्रकार का उपकरण मिल जाएगा इसीलिए इस दुकान का उद्घाटन है जिसको बहोत ही अच्छे से फूलों से सजाया गया है।

है लोअर भी है टॉप भी पैंट भी है शर्ट भी है पेजामा भी है सब कुछ दिखाई --

बहोत बड़ा सा मैदान है जो पूरे घास से हरा हरा पूरा लेहारा रहा है और--

जो स्मोकी यानी जो धुएँ की आँच में पकाया जाता है इसलिए लोग उसको काफी पसंद--